जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे एक रूम है जिसमें बहोत सारी किताबें रखी हुई है जैसे कि यहाँ पे --

मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने में जो सीढ़ी है मन्दिर के अन्दर जाने के लिए।

जो फूल के पेड़ है जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में धूप की वजह से और बहुत अच्छा लग रहा है।

वो स्कीइंग कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूं भोत सारे लोग जो हैं स्किल ले के ऊपर जा रहे हैं जो देखने में भोत अच्छा लग रहा है भोत सारे पेड़ भी हैं मैं देख पा रहा हूं।

और मैं देख पा रहा हूं कि बोहोत सारे जो गाड़ियां है वो खड़ी है जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं देख पा रहा हूं कि एक आदमी जो है गाड़ी पर खड़े होके --